यहां पे एक वूमेंस कि कपड़े के शॉप दिख रही है।

और यहां पे एक बाइक खड़ी है।

जैसे कि हमें ईमेज में दिख रहा है एक--

हमें इस इमेज में कोई ओवरब्रिज पुल --

इस इमेज में कोई नदी प्रदर्शित की गई है जहां पे बड़े-बड़े चट्टाने और छोटे-छोटे --

इस इमेज में हमें देखने को मिल रहा है की बहोत प्यारा कृष्ण और राधा जी की --

मूर्ति है जो बहोत ही आकर्षक--

इस तस्वीर में हमें एक जिम की इमेज शो की गई है।

टमाटर की खेती देखने को मिल रहा है।

जो हमारे बीमारियों का पता लगाया जाता है।

और स्टेज के लिए सीढ़ियां लगाई जा रही हैं और डेकोरेशन भी किया जा रहा--

चौराहा देखने को मिल रहा है साथ में ही इसके आसपास--

और ये फर्नीचर भी दिख रहा है।

इस इमेज में एक पेट्रोल पंप शो किया गया है जहां पे हम सभी लोग अपनी अपनी वाहनों का--

जाना पड़तें यहां पे हमें कुछ मशीनें भी दिख रही हैं।

इस इमेज में हमें देखने को मिल रहा है कि एक यह मैरीज --

इस इमेज में हमें जो शो किया गया है वो उमरिया जिले का--

लगाते हुए नज़र आ रहे हैं।

और यहां पे छोटे छोटे घास भी--

इंप्रूव करने के लिए वर्क आउट कर रहा है।

पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और यह इमेज --

करने की यहां पे उत्तम व्यवस्था होती है जो सरकार द्वारा हमें--

इस इमेज में बहोत ही पुराना--

कोई घर शो किया गया है।

जो अपने झुंड से बिछड़ गया है।

जहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ लड़के जिम कर रहे है।

जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं कि यहां पे--